पीले रंग की लाइटिंग भी हो रखी है यहां पे--

यह पिक एक बेडरूम की नजर--

सफेद रंग का गुब्बारा तो दूसरा संतरे रंग का गुब्बारा लगा हुआ--

जहां पर बहोत सुंदर मार्बल नजर आ रहा है इसमें जमीन की ओर एक--

यह पिक्चर में देखा जा सकता है कि इस पिक्चर में एक व्यक्ति अपनी सेल्फी ले रहा है।

इस पिक्चर में देखा जा सकता है इस पिक्चर में कुछ बच्चे पटाखे जलाते नजर आ रहे हैं।

और इसमें एक टेम्पो भी नज़र आ रहा है जो पीछे --

और एक कुछ बने शटर की नजर आ रही है।

एक व्यक्ति बैठा हुआ अपने बाल--

इसमें एक लाल रंग का कारपेट भी नज़र--

यहां पर एक महिला साड़ी पहन कर और मुंह पर मास्क लगा कर--

सुंदर बाहर की लग रही है।

बार की बोटले रखी नजर आ रहीं हैं और एक दो चेयर --

तो आसपास बहुत ही ऊंचे ऊंचे घर नजर--

ऊंचे छोटे छोटे पहाड़ भी नजर आ रहे हैं।

यह पिक्चर एक खुले मैदान में खड़ी बहुत सी पार्किंग में लगी गाड़ियों की नजर--